बस के पीछे लोगो भी है स्टॉप का स्टॉप लिखा भी है इंग्लिश में और जहां पे खड़ी है ऊपर नीले कलर की टीन सी है जिस जगह खड़ी है स्टेशन --

और ये कुछ स्टेज पे नाच रही हैं।

वाइट कलर की स्कूटी है ब्लैक कलर का इसमें हेलमेट है एक इंसान ये जा रहे हैं अंदर।